एक कॉन्सर्ट चल रहा है जहां पे दो चार लड़के खड़े हैं।

ये एक लड़का ब्लैक कलर का ड्रेस और ब्लैक कलर का पैंट पर पहना हुआ है।

कुछ नंबर लिखा हुआ है साइड में का वॉल पे एक पेंटिंग लगाई हुई है बहोत सारे चप्पल रखे हुए हैं।

नारियल के पेड़ जैसे दिख रहे है बहोत सारे शो प्लांट लगा हुआ है।

वहां से बहोत सारे जानवर भी रहते हैं और दो चार--

वहां पे बाढ़ आई हुई है बहोत सारे घर हैं।

ग्रीन कलर का मैट लगा हुआ है एक ए_सी है साइड में कुछ पेंटिंग्स है।

उधर बहोत सारे घर दिख रहे हैं।

उस मार्केट में बहोत से फूल मिल रहे हैं।

दुकान है जोकि डैफोडिल दिल से लिखा हुआ है।

एक गुफा है गुफा के अंदर बहोत पुरानी मेहल है।

उसमें अ जरी लगा हुआ है साइड में एक लड़का खड़ा है।

येलो कलर में कलर किया गया--

बहोत सारी बैनर्स लगे हुए हैं।

मुर्ती रेसीडेंसी नाम का एक घर है।

बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

व्हाइट कलर का पर्दा लगा हुआ हैं येल्लो कलर में अ पेंट किया गया हैं एक शो शेल्फ हैं दो चार --

पीछे बहुत बड़े एरिया में जंगल जैसा दिख रहा--

पार्टी हॉल भी है इंडियन चाइनीस --

पूरा पीछे सा दिख रहा है बहोत सारे पेड़ पौधे हैं एक नाव है नाव में दो तीन लोग हैं।

कॉलेज में दो तीन स्टेयर्स है जोकि दरवाजे से दिख रहे हैं।

समुद्रों मे बहोत बड़ी बड़ी लहरे आ रही है।